यहां पर ये क्रीम पाउडर की दुकानें है रेक्स में बहोत सारे क्रीम वगैर दिख--

और एक पेड़ है पेड़ के साथ ही क्रैंप्स बनाए गए हैं।

और इन पर पट्टियां सुनहरे कलर की बांधी गयी है और ऊपर --

यहां पर एस_बी_आई बैंक अ जून कैश लिखा हुआ है और यहां पर इतनी लंबी लाइन लगी है कि क्या ही बोलूं--

यहां पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है जो वाइट कलर की है और इस पर पोस्टर्स --